ये वैन खड़ी हुई है एक रंग पीला एक का सफेद है और उसके पीछे एक बिल्डिंग है जिसमे दो मंजिल बनी हुई है और उसके सामने भी घर है-- ।--

यहाँ हरियाली में भरी एक खूबसूरत जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे पेड़-पौधे लगे हुए है और बीच-बीच में घास लगी हुई है।

इन ठेलो को त्रिपाल से ढका गया है इसके पीछे एक--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

और नदी के बीचो बिच एक बोट दिख रही हैजिसपे कुछ लोग बैठे हुए है और बोट के पीछे एक घर दिख रहा है और नदी के इस पार एक मिट्टी की जमीन दिखाई दे रही है।

यह कार का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमें लाइन से कई सारे कार खड़े है।

और एक पिलर लगाए जा रहे है लोहे की छड़ लग रही है एक आदमी जमीन के नीचे खड़े है जिनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है।

यहाँ एक समारोह के लिए बनाया गया हॉल दिख रहा है जिसे पर्दो से सजाया गया है बीच में एक स्टेज बना है।